यह एक खेलौना का दुकान है यहां पे बहुत सामान रखे गए हैं।

कुछ आदमी जूते पहने हुए हैं कुछ आदमी चप्पल पहने हुए हैं।

यहां पे टेबल पर कॉपी रखे गए हैं यहां पे एक कार है।

एक बाइक पल्सर है। पल्सर में लाइट लगाए गए हैं।

यहां पे बहुत बिल्डिंग है जो सफेद कलर में है यहां पे एक घर में लाइट लगाए गए हैं।

यहां पे बहोत पेड़ लगाए गए हैं जो हरा कलर में है यहां पे बहोत गाड़ी है जो अलग अलग है।

आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए कुछ आदमी सफेद कलर का पहना हुआ है।

गाड़ी भी हैं यहां पे बहुत चप्पल खोल के रखे हुए हैं और जूता भी।

लाइट लगाए गए है जो सफेद कलर में है लगाया गया है जो वाइट कलर में है। यहाँ पे बोतल है बहुत।

पे बहुत आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं यहां पे बच्चा भी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे आदमी हैंआदमी चप्पल पहना हुआ हैं जो चप्पल काला कलर में हैं।

बिल्डिंग पर पखा लगाए गए है जो काला कलर मे है। यहा पे बहुत आदमी है जो अलग अलग कलर के कपडे पहने हुए है।

यह एक रोड का चित्र है रोड काला कलर में है।

यह एक जंगल है यहां पे बहुत पेड़ है जो हरा कलर में है।

एक गाड़ी पर हेलमेट है जो काला कलर में है।

लाइट भी लगाया गया है जो सफेद कलर में है यहां पे एक लैपटॉप है जो काला कलर में है।

बहुत आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे सेब नारियल संतरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे सुप भी दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर में है।

यहां पे केला भी उपस्थित है जो पीला कलर मे है यहां पे नारियल भी उपस्थित है।